जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग नहा रहे हैं।

प्रशासकीय पुलिस थाने का पोस्टर लगा हुआ है आसपास में।

कुछ शॉप है जो सभी ओपन है यहां ब्लू कलर के पोस्टर लगे हुए हैं।

आसपास जो दीवारें हैं बाउंड्री की वो सारी वाइट कलर की है जिसमें ग्रीन कलर कहीं-कहीं --

बोर्ड लगा हुआ है और सामने इसका मेन गेट हैं।

जहाँ पर एक रिसेप्शन बना है एक टेबल रखी है एक चेयर रखी है।

आसपास बहुत सारा शॉप में सामान रखा हुआ है और यहाँ पर सारे--

यहां सामने एक रेड कलर की कार खड़ी है रोड पर--

इसके साइड में एक पेड़ है पीछे की तरफ से कुछ लोग पैदल आ रहे हैं।

कुछ पहाड़ बने हुए हैं जिन पर भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए है और इन सभी के बीच में एक घर बना हुआ है।

यहाँ पर एक मंदिर है जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमा लगी हुई है।

पास में ही कुछ नीले कलर के पोस्टर लगे हुए हैं और साइड में--

जो सामने की दीवार है वो पूरी ब्लैक कलर की है वहां पे आइसक्रीम बनाने का बहुत सा--

यहां पर एक शॉप है जिसमें बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

यहां पर बहोत सारे ईस्टूडेंट ड्रॉइंग बना रहे हैं और इन सभी के सामने--

लोहे की नीली टेबल रखी हुई है जहाँ पर यह ड्राइंग बना रहे हैं।

और इनके सामने कुछ टीचर्स खड़े हैं कुछ चेयर रखी है सामने की तरफ--

यहाँ पर एक सफेद कलर की बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है।

और बाहर की तरफ बहुत सारे दोनों तरफ पैड लगे हुए हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं।

यहाँ पर एक सफेद कलर की इमारत बनी हुई है और उसके ऊपर एक गोला आकार--

जहां पर कुछ लेम्स बने है कुछ छोटे छोटे पौधे लगे हैं।

पास में एक कार खड़ी है ओ जो सामने का एरिया है वो पूरा खाली है।

जिसे लोहे के रेलिंग पर बिठाया गया हैं इसमें कुछ--

यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और यहाँ डेमो में--